ब्राउन कलर का पेंट हो रखा है।

यहां पर दो बाइक नजर आ रही--

जिसमे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

जिसकी दीवारें टीन की बनी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर कई सारे सोफे रखे हुए--

यही है इमेज एक दुकान की दिखाई दे रही है।